और दो बोटल है पानी का और एक थर्मस है नीचे फर्श है जो क्रीम कलर का--

और सामने बहोत सारे घर है जो बहोत ही कलरफूल है और ऊपर खुला आसमान है।